और एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

बाहर के साइड दो खिड़की भी दिखाई दे रहे हैं और दो दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं।

और दो चेयर भी रखे हुए हैं।

यह एक स्टेशन जैसा लग रहा है।

यहां पे बहुत अलग अलग प्रकार के टाइल्स भी रखे हुए हैं।

दुकान के अंदर में बेल्ट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

शादी का यहा पे फेस्टिवल होता--

यह एक फूलों का दुकान।

ये कलर केसरिया पीला रेड भी दिखाई दे रहा है।

व सीट का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है।

यह एक सैलून है जहां पे एक आदमी बाल कटाने गया है।

कार भी दिखाई दे रहे हैं जहां पे एक ग्लास टाइप का भी रखा हुआ है।

ढोलक के बगल में एक तकिया भी दिखाई दे रहा है।

फूल भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं।

भी दिखाई दे रहा और फ्रिज का कलर पीला और ग्रीन टाइप में भी दिखाई दे रहा--

और एक बाल्टी भी रेड कलर का दिखाई दे रहा।

दुकान है जहां पर जींस टी शर्ट यहां पर मिलते हैं।

का कलर रेड ब्लू व्हाइट है।